मछली की स्टॉल दिखाई दे रही है।

मेले की सीन दिखाई दे रही है।

जो कि नदी के बीच में छे बोट है और बोट पे दो दो लोग बैठे हैं।

जो कि पहाड़ के बीच में एक गुफा है।

जोकि होटल में दो चेयर और दो टेबल हैं।

सोफे पे दो आदमी बैठ के एक दूसरे से बातें कर रहे हैं।

दोनों तरफ मकान दिखाई दे रही है।

इस फोटो में मुझे आलू की ट्रे दिखाई दे रही है।

जोकि बहुत सारे आलू है और आलू में मिट्टी लगी है।

कर रखी है और गेट के बाहर--